कुछ व्यक्ति नजर आ रहे हैं काफी शांत माहौल दिखाई दे रहा--

ए इसके बाहर एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिस पर नगर निगम चंडीगढ़ लिखा हुआ है यहां पर काफी सारे--

हॉल में किया जा रहा है इस हॉल में जो कर्टेन्स हैं उनका कलर पर्पल दिखाई दे रहा है।

यह एक कमरे का दृश्य है जिसके अंदर काफी सुंदर बेड है और बैठने के लिए एक--

यह एक स्कूल का दृश्य है जिसके पास एक रैबर पानी का ग्लास और कुछ चेयर्स र--

यह एक सड़क का व्यू दिखाई दे रहा है जिस पर उम्म स्कूटर बाइक और कार चलती हुई दिखाई दे रही हैं।

यह एक हरियाणा स्टोर होलसेल रिटेल राइस आटा की शॉप है जिसका--

यह एक मार्केट है जोकि चंडीगढ़ की लग रही है।

आदमी भी है जिनकी शर्ट्स के कलर ब्लू पिंक और वाइट है।

ये एक सड़क है जिसके आस पास खूब हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और काफी सुंदर व्यूज है इनका।